शादी वाली स्टेज सजी है और ये दो हैं।

इधर पेड़-पौधे हैं। बिल्डिंग बनी लकड़ियां के। ये बोहोत अच्छा इधर --